थोड़ा दिखाई दे रहा है।

उसका कलर है व्हाइट रेड पत्ता है ग्रीन --

मंदर के आसपास में पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

उसके बगल में पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

इसका पीछे में अह पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

पीछे में पेड़ पौधा दिखाई दे रहा --

दो लाइट दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है।

पानी के बगल में पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

दो दांती दिखाई दे रहा--

इस पिक्चर में बहुत सारा मछली दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में बहोत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

लाइट्स दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में दुकान दिखाई दे रहा है।

के नीचे में घर दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में फ़्लाइट दिखाई दे रहा है।

साइनबोर्ड के नीचे में लड़के दिखाई दे रहा है लड़के के पीछे में टूल दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहा है।